उआसिबल करके वह शर्ट को देख रहा है। और दूसरा जेंट्स रिसेप्शन पे जो बैठा है जो व्यक्ति उससे बातें कर रहा है। और यहां पर टेबल पर कपड़े भी--

इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह एक केंचुआ है जहां इसकी बॉडी बहुत ही ऊपर से मजबूत होती है और जो एक खुले मैदान में चल रहा है।

ए जहां पर इसको देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो को देख कर ऐसा लग रहा हैकी यहाँ पर बहुत सारी हरी मिर्चियाँ रखी हैऔर जिसको अलग अलग कर कर एक आद--

दिखाई दे रहा हैऔर आसपास हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है और यह बहुत अच्छा मैदान दिखाई दे रहा--